एक पर्दा दिख रहा है उसके ऊपर एक स्प्लाइजर रखा हुआ है।

और उधर कुछ पर स्टेज बनाए हुए हैं इधर नीचे में बहुत सारे टाइल --

और एक स्कैनर रखा हुआ है नीचे कुछ पेपर रखी हुई है।

चित्र में एक घर दिख रहा है जिसके ऊपर बहुत सारे चीज लिखे हुए हैं।

और रंग बिरंगे लाइटें जल रहे हैं अंदर में बहुत सरे टाइल्स लगे हुई है।

ऊपर में सेटर लगा हुआ दिख रहा है और कुछ पोस्टरें लगी हुई हैं।

एक बहुत ही दूर में पानी जमा हुआ है और छोटे छोटे गड्डियां दिख रही है।

इस चित्र में एक बड़ा सा घर दिख रहा है जिसमें न्यू ताज लिखा हुआ है।

जो की डाली और डूहे में रखे हुए हैं टमाटर दिख रहे हैं।

इसके नीचे दरवाजा है और शीशा से पैक किया हुआ है।

और बहुत सारे चीज लिखें हुए हैं ऊपर में करकट चढ़ाया हुआ है।